यह खाने की प्लेट बहुत डिलीशियस लग रही है बस मन कर रहा है दोनों चम्मच उठाउॅं और मुँह में --

खाना डाल रही है बट क्या कर सकते है ये तो फोटो है खाने तो जा नहीं सकते।

विंटर के कपड़े मॉल वी टू में हमें दिखाई पड़ रहे हैं जैकेटस और बहुत से लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हुए भी दिख रहे हैं।

कैफे नजर आ रहा है जहां पे कपल्स न्यूली मैरिड हस्बैंड वाइफस आ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं।

घर की छत बनते हुए दिखाई दे रही है जहां पर मजदूर अपने काम में लगे हुए हैं और एक इंसान सब कुछ देख रहा है की यहां लोग काम सही कर भी रहे--

यहां पर मुझे दो रास्ते दिखाइए पड रहे है और यह एक लड़का दिखाई पड़ रहा है जो कि मुझे कंफ्यूज लग रहा है कि वह इस रस्ते से जायगा ।

यहां पे यह अंकल अपने न्यू ई-रिक्शा के साथ फोटोग्राफ लेते हुए और जो कि बहुत खुश है ये उन्होंने एक न्यू ई-रिक्शा निकलवाइ है और --